इस पर एक बेड पड़ा हुआ है और--

जिस दुकान के बाहर काउंटर पर कुछ बोतलें रखी हुई हैं।

इस चित्र में एक लंबा चौड़ा मैदान है।

इस चित्र में एक मेडिकल स्टोर है।

और यहां पर पुतलो ने भी कपड़े पहने हुए हैं।

और इनके प्लेट में भी कुछ रखा हुआ है।